जिम करने वाले मशीने मशीन लगी हुई है।

पूरा मॉल का दृश्य काफी मनमोहक है और --

सारे बच्चे नीचे बैठ कर पढ़ रहे हैं एक गाँव का दृश्य प्रतीत हो रहा है ।

और एक पे नृत्य कर रहा है।

टैंकर लगा हुआ है।

यहाँ पर एक साइड ब्लू कलर से फॅमिली लोग हैं ।

यह एक पूरा समाज का छोटा सा दृश्य है।

वो स्लाइड से नीचे की ओर आ रही है।

जिसका बोर्ड रेड कलर का है।

एक और तारा-माची लगी हुई है।

यहाँ पे लोग अपने-अपने जगह पर जाते है तथा आते है।